उसका दरवाजा खुला हुआ है दो दरवाजे हैं जो खुले हुए दिख रहे हैं और उसके सामने ही एक आदमी खड़ा है।

पतरे का शेड है और सामने एक बड़ा ब्लू कलर का--

इस इमेज में किसी बर्तन में आलू दिख रहा है बड़े और छोटे आलू हैं।

जीन्स पेहन के खड़ा है और उसके पीछे ही चेयर्स दिख रहे हैं।

एक इमारत है और उससे अटैच भी एक इमारत दिख रही है जहां पे--

कांधे पे एक बैग लटकाया हुआ है और उसके पीछे भी फोर व्हीलर है।

एक बड़ी सी फोर व्हीलर खड़ी हुई है और दूसरी ते तरफ--

और उसके अपोजिट साइड एक औरत है।

कांच से उसके ऊपर कांच से डिजाइन बनी हुई है।

और उसपे लाइट सामने ही लाइट के पोल दिख रहे हैं।

और ये रोड से दूसरी रोड की तरफ जाता हुआ एक आदमी--

ये किसी कमरे का दृश्य है जहां पे सामने डबल बेड दिख रहे हैं।

यहां फर्नीचर लगा हुआ है उड़ेन अलमारी बनी हुई है।

ये एक मच्छी बाजार का इमेज है जहां पर सामने ही कैरेट रखा हुआ है और उसके ऊपर मच्छियां रखी हुई है।

और उनके पीछे एक अ साइड में एक आदमी है जो जो मुंह पे हाथ रखके खड़ा हुआ है।

इसके ऊपर दो क्रीम कलर की रखी और उसके ऊपर--

एक मल्टीकलर का झूला सामने से बड़ा सा दिख रहा है।

चेहरे पे है और पीछे ही दो दिल शेप में अ पीछे सजावट की गई है और पिंक कलर में--

सामने इमेज में एक कुत्ता दिख रहा है।

और उन्होंने स्टेस को गले में लटका रखा है।

सामने ही एक पतला सा रोड है और दोनों तरफ--

और सामने ही दो लोग खड़े हैं।